पिंक वाले के ऊपर नार्मल डिज़ाइन है और यहाँ एक मशीन के अंदर रखे हुए है जो की अंदर और दूसरे आइस-क्रीमों से भरा हुआ है|

पार्किंग एरिया दिख रहा है बिल्डिंग दिख रही है रोड दिख रही है और खम्बे दिखाई दे रहे है|